करेला है बरबट्टी है भिंडी है कैप्सिकम है सकरकंद है बीट है बैगन है किंद्री ह --

क कॉलेज दिखाया गया कॉलेज का गेट वेट बाहर पर लोहे का है जो पूरे तरह बंद है ताला लगा हुआ है।

बहोत सारे बैठने की जगह है बाउंड्री टाइप्स के बनाए गए है एक पर्दा लगाया गया पर्दे पर कुछ दिखाई जा रहा--